अच्छा है ये जगह वो देखो खूबसूरत अति खूबसूरत

जो भी है बहुत बढ़िया है जगह ये बहुत ही अति सुंदर है जगह ये --

ये कोई कार पार्किंग लग रहा है | बहुत ही अच्छा कार पार्किंग है | यहाँ ऊपर यहाँ कोई सॉन्ग भी लगा हुआ है यह भी अच्छा है